जिसमें खाने के लिए चिकन और चावल रखे गए हैं। सामने एक ग्लास भी रखा गया हैं।

लगता है यह कोई चोटी है। उपर मंदिर है। अकेला मंदिर है।

गिफ्टिंग का सामान लगा हुआ है इसमें बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है।

तो देख सकते हैं यह एक घर है जिसमें चार छे आठ कमरे नजर आ रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे सर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

और एक होटल भी नजर आ रहा है जिसमें बाहर बहुत सारे गमले लगे हुए हैं जिसमें पर्दे ही पर्दे लगे हैं और यहां पर शीशे ही शीशे लगे हुए हैं।

और इसकी रोशनी बहुत ही सुंदर तरीके से नजर आ रही है और चारों तरफ--

और यहां सामने चार पुल नजर आ रहे हैं।

चार छह कमरे भी नजर आ रहे हैं और इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर किए गए हैं।

और जुगान लगा पुरिस स्टेशन है जिसमें बिहारी लिखा गया है सामने--

और नीचे बहोत सारा सुंदर सुंदर दी--

राइट साइड को एक टी_वी भी है लेफ्ट साइड को भी एक टी_वी है और पीछे और कार दिखाई दे रही है।

हेलो गाइस तो देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे सूट नजर आ रहे हैं बहुत सारी टॉवल नजर आ रही है और इसमें रंग बिरंगे है ग्रीन पिंक येलो ब्लू ।